शर्ट पहन रखी हैं और पीछे से फुहारे वाला पानी चल रहा और लाइटे हैं नीचे घास है और बहुत सारी बिंदिया हैं और ऊपर काला काला अस्मा --

जिसपे एक रुमाल भी रखा हुआ है और चश्मा भी दूसरे आदमी ने सिर्फ हाथ दिखाते हुए हाथ मे कप पकड़ा हुआ है।

यहां पे एक ओवर ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर से एक टमटम रुका हुआ है और तीन आदमी सामने खड़े हुए हैं। एक पीछे लड़का जो खड़ा है उसने पीले कलर की शर्ट नीले कलर की जी --

कुछ ने अपने हाथ में चार्ट पकड़ रखी है और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और नीचे की ओर कलर रखे हुए हैं।